ये एक यहाँ पे--

रिसेप्शन की टेबल भी है।

एल_ई_डी लाईट्स भी है फैन भी है।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

लाईट का खम्बा भी है यहाँ पे सामने।

आजू बाजू यहां पे डस्टबिन रखे हुए बैठने के लिए कटै बड़े बड़े झाड़ा हैं।

ये एक यहां पे कटिंग शॉप है और यहां पे बहोत सारे बेंचेस और कुर्सियां है बैठने के लिए।

उस पे यहां पे बहोत सारे फूलान के लड़ा भी डाले गए हैं।

यहाँ पे ऊपर लाईट का छोटासा फोकस है।

निचे यहाँ पे हरी भरी घास उठी हुई है बाउंडरी को यहाँ पे एक बड़ी सी--